यहा पर एक मंदिर है यहा पर एक सिडिया है जिस पर बहुत सारे लोग बैठे हुए है आजूबाजू मे बहुत सारे लो--

खंबा है उस खंबे का आजू बाजुमे बहुत सारी घास लगी हुई है। आसपास बहुत सारे जानवर भी है भैसे भी है।

सामने एक दुकान है दुकान के बाहर बहूत सारा सामान रखा हुआ है। दुकान के बाहर एक रस्ता है। उस रस्ते पे बहुत सी ऑटो और गाड़िया है।

सामने बहोत सारे पेन रखे हुए है आजूबाजू मे भी बहोत सारे पेन्स रखे हुए है। एक दीवार है उस दीवार पर एक पोस्टर है।

उसपर भी घास उगी हुई है आजूबाजुमे बहूत सारे पथर है। आजूबाजुमे बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए है।

उसके बाजुमे एक बड़ा सा पत्थर है वहा पर एक पेड़ लगा हुआ है वह काले कलर का है। आजूबाजू मे भी बहुत सारे पत्थर है।

सामने एक रूम है उस रूम मै एक ऐ_सी है आजु बाजु मे बैठन के लिए बहुत सारे डेस्क और बेंच है उस बेंच पर एक बॉग रखी हुई है।

गई है आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है उसके बाजु में एक और दुकान है।

सामने एक रूम है वह रूम पढा नेकी रूम है वहा पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है वह सफ़ेद कलर का है।

सामने एक रास्ता है उस रास्ते पर एक ऑटो रिक्षा खड़ी है और दूसरी र रोड पर एक कार खड़ी हुई है वह व्हाइट कलर की है।

सामने एक काले कलर की गाड़ी खड़ी हुई है उसपर नंबर प्लेट लगी हुई है उसे काच भी है आजूबाजू में गाड़िया खड़ी है उसके--